और यहाँ पे अ कुछ बच्चे बेठे हुएँ हैं जो उनके हाँथ में सफेद कलर की ड्राइंग शीट रखी हुई है।

हाँथी के दो सफेद दाँत दिखाई दे रहें हैं उसपे एक इंसान खड़ा हुआ है उसके हाथ में एक डंडा है और पीछे कुछ नाव भी चल रहीं हैं ।